यह चित्र वर्कशॉप की दिखाई पड़ रही है यहां पर सामने लिफ्टों में गाड़ियां लगी हुई हैं।

उसके हाथ में एक पानी की एक पाईप नजर आ रही है।

यहां पर बैठने के लिए एक कुर्सी भी रखी हुई है जोकि काले रंग की है।

वहीं सामने दीवार पर दो कागज।

इस चित्र में काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

काफी ज्यादा यहां पर लाइटिंग्स भी हैं।

दो खिड़कियां भी यहां पर नजर आ रही है।

मार्बल भी यहां पर बिछाया हुआ नजर आ रहा --

जो साइन है उसके नीचे एक सफेद रंग की दीवार नजर आ रही है।

इस चित्र में एक सामने पेट्रोल पंप नजर आ रहा है यहां पे सामने--

इस चित्र में एक काले रंग की गाड़ी नज़र आ रही है जो की लिफ्ट पर टंगी हुई है। यहां पर साथ में लिफ्ट का जो रंग है वह संतरे रंग का है।

पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर एक लाल रंग की शर्ट और--

ब्लू कलर की जींस पेहने हुए आदमी--

शांतिपूर्वक खड़े हैं तो कुछ लोग आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चितर में चार कुर्सियां लगी हुई हैं यह एक नाई की दुकान प्रतिक हो रही है यहां पर चार शीशे सामने नजर आ रहे हैं।